बड़ी-सी कांच की बिल्डिंग बनी हुई है| बिल्डिंग के ऊपर बड़े से पोस्टर लगे हुए हैं जिस पर बिल्डिंग के दुकान का नाम लिखा है।

और कुछ थोड़ा बहुत पानी भरा है कुछ कमल के ये पेड़ लगे हुए हैं| एक पेड़ में कमल का फूल खिल--

उन बेंचो पर सफ़ेद रंग की कुछ प्लेटें रखी हैं और कांच की गिलास रखे हुए हैं रेस्टोरेंट की छत पर लाइटें लगी हैं।